और एक बल्ब भी जल रहा है पीछे एल_ई _डी एंड एक वॉल एक वॉल पेंटिंग भी लगी हुई है।

इस वीडियो में एक ऐरोप्लेन दिख रहा है खड़ा हुआ ए यहाँ पर पूरा खेत नज़र आ रहा है हेलीपैड पर वो प्लेन खड़ा हुआ है।

एंड उसने हाथो में भी दोनों हाथों में जूते पहन रखे है शूज पहन रखे है एंड उसके पीछे कुछ रेलिंग सा लगा हुआ है जिसमे बहोत सारे --